इस तस्वीर के अंदर हमें मैदान पीला-पीला दिखाई दे रहा है।

अ चल फिर रहे हैं खड़े हैं कुछ बैठे हैं गाड़ी वाला भी एक जा रहा है।

एक और महिला बच्ची के साथ खड़ी हमें नजर आ रही हैं।

बोर्ड ऊपर हमें लगे हुए और रखा हुआ भी एक बोर्ड हमें--

अ मैट्रिक्स सिनेमास लिखा हुआ है ऊपर बोर्ड पर।

हमें पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है उसके पास और -और भी बाहर जाली के अंदर पेड़ लगे हुए हैं।

हमें इस तस्वीर के अंदर मशीनें रखी दिखाई दे रही हैं एक्सरसाइज मशीन है।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

पेड़ हमें लगे दिखाई दे रहे हैं।

और एक घर बड़ा सा मकान हमें हरे रंग का दिखाई दे रहा है बना हुआ--

खिड़कियां नजर आ रही हैं दरवाजे नजर आ रहे हैं।

और हमें नजर आ रहा है एक बोर्ड लगा हुआ--

हमें लोहे के तार और हमें जाली भी दिखाई दे रही है लोहे के तार दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें बहोत सारी भीड़ दिखाई दे रही है।

हमें लाल रंग की एक नई चमचमाती कार खड़ी दिखाई दे रही है।

जिसमें नीली खिड़कीयां हमें बंद दिखाई दे रहीं हैं।

इस तस्वीर में हमें टेबल पर रखी हुई प्लेटें --

और हमें दिखाई दे रही हैं बहुत सारे हमें लोग दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए--

और खेती हमें दिखाई दे रही है उसमें भी हरी हरी हमें खेती नजर आ रही है।

पेट्रोल पंप पे हमें खड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

और बीच से हमें रास्ता नजर आ रहा है।

और हमें अ डब्बे उनके अ ज्वेलरी केस मैरून लाल रंग के पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं जमे हुए रखे हुए हैं।

कहीं घास लगी है हरी कहीं सूखी सूखी है।